यह एक ट्रेंड्स मॉल है। यह मॉल काफ़ी बड़ा और सुंदर है। यहाँ इस मॉल में सब ब्रान्डेड कपड़े मिलते हैं और यह कपड़ा काफ़ी सुंदर है। यह कपड़ा काफ़ी अच्छा रहता है इसलिए ट्रेंड्स मॉल में आकर लोग कपड़ा खरीदते भी--

यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर चाय पीते हैं यहाँ का चाय काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है इसीलिए --

एक्चुअली डांस कर कर बहुत सारे पुरस्कार भी जीतती है। यह लड़की काफी खतरनाक डांस करती है। यह स्टेज पर भी अच्छा परफॉरमेंस कर --

यह एक किताब की बहुत बड़ी दुकान है यहाँ पर बहुत सारे किताब कॉपी कलम और कलर आदि पढ़ने के सामान मिलते हैं यहाँ पर बच्चे आ के कॉपी किताब कलम खरीदते हैं और अपना पढाई करते हैं।